और यहां पर यह क काम चल रहा है इसमें और यहां इधर की तरफ पूरा का पूरा जाल बन रहा है।

पीली सफेद नीली इस तरीके से और बहुत बड़ी-बड़ी भी है छोटी-छोटी भी बाल्टी है और डिब्बे भी हैं।

यह है प्रस्त की हट्टी और यहां पर अं म्म हट्टी लिखा हुआ है और लेकिन यह पठानकोट का मशहूर होलसेल काइट स्टोर है मतलब यहां पर पतंगे मिलती हैं।

बहुत सारी पतंगे मिलती हैं हर तरीके की पतंगे यहां मिलती है छोटी बड़ी और हाँ मतलब जिस तरीके की पतंग चाहिए उस तरीके की देखिए बटरफ्लाई वाली भी पतंग है यहां पे --

जैकेट पहन रखी है और यं ऊपर कैप लगा रखी है मास्क लगा रखा है उनके हाथ में कुछ कागज है और इधर की तरफ बहुत सारे--

सरिए लगे हुए हैं और पूरा जाल बिछा हुआ सरियों का और यहां ड्रम पड़ा है कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है यहां पर और यह बहुत म्म बड़ी बिल्डिंग बन रही है।

यह बहुत बड़ा बार है आर_वी का और यहां पर अ रन अ यहां बहुत सारी चेय भी पड़ी हुई है और यहां मेज और कुर्सियां रखी हुई हैं और--

लाइट लगी हुई है और पीले कलर की नीचे की तरफ लाइट लगी हुई है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है लेकिन ये गंदी--

यह मंदिर है शायद और यहां पर जो है ये हैदर की तरफ छोटा सा मंदिर है यहां पर एक औरत है और एक लड़का है।

यह है द चॉकलेट रूम और बर्गर यहां पर बर्गर का एक पोस्टर लगा है और उसके साथ में एक गिलास है कोल्ड्रिंक का।

यहां पर पेट्रोल पंप है और यहां पर बहुत सारी गाड़ियां आई हुई है जो यहां पर कुछ तो ट्रक है कुछ कार है।

और यहां कुर्सियाँ हैं और अं यहां पर लिखा हुआ है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पेड़ बनाया हुआ है।

वो भी तिरंगे से और चारों तरफ से तिरंगे से ही उसमें बलून एक तरह सजाए हुए हैं।

यह एक मेज है और यहां पर जो है प्लेटें रखी हुई है कुछ खाली प्लेटें हैं कुछ दो प्लेटों में बिरयानी है और उनमें चम्मच लगी हुई है।

और यहां पर एक ये किसी का हाथ दिखाई दे रहा है और यहां टिशू पेपर रखा है और कोल्ड ड्रिंक रखी है पानी की बोतल भी रखी है।

और गिलास भी रखे हैं दो-तीन और यहां पर जो है और भी यहां पर प्लेटें हैं वो लेकिन वो सब खाली हैं।

यहां पर बहुत सारा यहां पर बहुत सारे फल हैं और यहां पर सेब है संतरा है अंगूर है।

और यहां पर ब अनानास भी है बहुत सारे फल हैं यहां पर केले भी हैं सेब भी हैं।

छोटे-बड़े पेड़ मिलते हैं और बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी हैं और ऊपर जाने के लिए यहां पर सीढ़ियां हैं और यहां पर कुछ नंबर भी लिखा हुआ।

यह युगल संस की दुकान है और यहां पर अ इसका उद्घाटन हुआ है।

और इसमें नीले और अ पीले कलर कलर के बलून लगा रखे हैं।

अं कुछ मतलब टी_वी टाइप का है जिसमें से कुछ लगा उनको देखने के लिए करने के स्कैन करते हैं।

लगी हुई है म पोस्टर लगा हुआ है और इसके पास भी बहुत सारा सामान हैं।

यह स्टाइल फुटवीयर की दुकान है और यहां पर बहुत सारे जूते चप्पल हैं और कुछ अं शीशे में भी अं रखे हुए हैं।

शीशे की रैक में और यहां पर अ उम बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए हैं डिब्बों में पैक हैं।

उनका का सारा का सारा वर्णन किया गया है और हर तरीके की यहां पर मूर्तियां बनी हुई है दुर्गा जी की मूर्ति है।

यह खेतों पे जाने का रास्ता है और इसे मेड़ कहते हैं और यहां पर जो है दोनों तरफ इसके पेड़-पौधे लगे हैं केली के पेड़ भी हैं।

माउस भी माउस का डिब्बा भी है बहुत सारे हर चीज का ब्लूटूथ है कीबोर्ड के डिब्बे हैं और यहां मंदिर भी है बहुत सारा सामान है यहाँ।

यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं उस पे भी कुछ लिखा हुआ है पोस्टर टाइप के चिपके हुए हैं और हर एक रूम अ क्लास रूम के आगे गममें लगे हुए हैं।

एक ढाबा है और यह लिखा है चेन्नई एक्सप्रेस साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चाइनीज सब कुछ मिलता है यहाँ--

और यहां पे बाइकें खड़ी हुई है अवेंजर है और बहुत सुंदर लग रही है ये तो--

स्कूल है और स्कूल में जो है बच्चे अंदर जा रहे हैं और यहां पर टीचर उनका स्वागत कर रहे हैं टीका लगा रहे हैं फूल डाल रहे हैं और हर एक बच्चा जो है अंदर जाके --

और यहां लेडीज टीचर भी खड़ी हैं प्रिंसिपल भी खड़े हैं उनका नाम लिखा जा रहा है और उनके टीका लगाया जा रहा है।

यहां पर एक स्स अ हॉस्पिटल है और यहां पर बहुत सारे बेड है और यहां पर एक नर्स खड़ी है और एक बेड बॉय खड़ा हुआ है।

बड़बर वाले कपड़े पहन रखे हैं और यहां पर पर्दे भी लगे हुए हैं हर एक बेड के सामने।

यहां पर एक पिज्जा हट है और यहां पर व व पिज्जा लिखा है और मम मम और गोल सर्किल में पिज्जा ही बना रखा है।

और यहां लैपटॉप रखा हुआ है और एक बहुत सारे कार्टून बना रखे हैं बड़े अजीबो गरीब से और यहां मेज रखी है।

यहां पर यह एक अं कोई अं कंपनी टाइप की है यहां बहुत-बहुत बड़े--

टंकी ऐसी लगी हुई है और यहां मशीन भी लगी हुई है छत के ऊपर और एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें से तेल निकाल के उसमें--

और यह एक पेट्रोल पंप टाइप का ये बना रखा है छोटा सा।

यह यहां पर जियो का ऑफिस है और यहां पर अं उम्म वो अं बंग बंगाली है बंगाली में लिखा हुआ है कु--

और यह ममता बेनर्जी है जो उनका पोस्टर लगा है और यहां कुछ मेंबर हैं जो स्कूटी पर बैठ के जा रहे हैं कुछ लोग हैं।

एक शादी समारोह का यहां पर मंडप सजा रहा है और यहां पर बाहर की तरफ गेट सजाया हुआ है बहुत अच्छा--

और यहां पर फूल लगे हुए हैं और यहां पर जो है मैरिज लिखा हुआ है और अंदर की तरफ भी बहुत सारी तैयारी चल रही है सा--

और यहां पर जो है कुछ खुला एरिया है बहुत ज्यादा रेलिंग लगा रखी है।

यहां पर बहुत सारे यह इन्वेटर टाइप के रखे हुए हैं और ये कुछ मशीनें सी हैं और यहां पर कुर्सी भी रखी हुई है ए--

यह बहुत बड़ा गोदाम है और यहां पर बहुत सारे कॉटन रखे हैं और बहुत डिब्बे रखे हुए हैं यहाँ पैकेट भी रखे हुए हैं ऊपर की तरफ टीन पूरी में पड़ी हुई है।

और एंगल लगे हुए हैं और यहां पर पोस्टर से लगे हुए हैं और यहां पर एक टैंक रखा हुआ है।

और यहां पर एक वो अ गमलें भी रखे हैं बहुत सारे और उसमें फूल पो पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सामने की तरफ कॉलोनी दिखाई दे रही है।

और यहां पर जो है अ बहुत सारे अ फ्रूट चाट के भी डोंगे लगे हुए हैं और यहां डेकोरेशन बहुत सारा हो रखा बहुत अच्छा हो रखा है लाइटें जल रही है बहुत सारी--

यहां पे पेड़ बहुत सारे पेड़ हैं और यहां कुछ लिखा हुआ है शिला टाइप की यहां पे है और यहां पर कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर मेडिकल है और यहां पर बहुत सारी दवाइयां रखी है बहुत सारा सामान रखा हुआ है और एक आदमी है जो यहां फोटो खींचा रहा है और एक मेज यहां बहुत सी बड़ी रखी हुई है।

और बहोत सारी यहां पे लाइटें लगी हुईं हैं यहां बहोत सारी दवाइयां डिब्बों में भी हैं यहां शीशियों में भी दवाइयां हैं।

यहां पर बिजली घर है और यहां पर बहुत सारे तार लगे हुए हैं और सामने की तरफ अं सूरज है जो अस्त हो रहा है।

यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है और यहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है खंभे पे।

यहां पर इन लोगों ने बहुत सारी मूर्तियां लगा रखी है और उनमें फूलों से सजा रखा है भगवान जी को और यहां पर जो है बहुत सारे पूजा की थाली बुली भी रखी हुई है।

लोटा रखा है भगोना रखा है फल रखे हैं और यहां पर एक मां बेटे खड़े हैं।

तो मां हाथ जोड़ के खड़ी है आंखें बंद करके और लड़का उनको देख रहा है हाथ जोड़--